और बहुत अच्छा -अच्छा सामान दिखाई दे रहा है जो भी है अच्छा-- हैं।

ये बहुत ही अच्छा होटल पैलेस है जो की यहाँ चाय नाश्ता भोजन के लिए व्यवस्था पूरे तरीके से है।

बहुत ही अच्छा मंदिर दिख रहा है जोकि रोड़ से आदमी लोग भी आ रहे है रोड़ से भी जा रहे है बहुत ही शानदार मंदिर दिखाई दे रहा है अच्छा ये मंदिर हैं। ]

बहुत ही शानदार महल दिखाई दे रहा है जोकि आदमी भी चल रहे है उस महल के छत पे बहुत ही अच्छा शानदार छत दिखाई दे रहा है रेलिंग भी लगा है बहुत प्यारा- सा बहुत ही शानदार ए महल हैं।

बहुत ही अच्छा छत है बहुत ही अच्छा बनल है ये रूम और बिल्डिंग भी बहुत ही अच्छा तीन चार फ्लोर का है बहुत ही अच्छा दिखत हैं।